और आपको वहाँ संस्था के बाहर में एक व्यक्ति खड़ा है। उसके बगल में एक छोटा सा मकान है। वहाँ पर एक पुरुष और एक महिला बैठी हुई है।

यह एक मस्जिद है। मस्जिद के बगल में मकान है और ब मकान के बगल में दुका बहुत सारे रोड्स के बगल में किनारे में दुकान है।

एक व्यक्ति है बाहर में दो वृद्ध महिला है और उनके बगल में एक व्यक्ति है जिनका चेहरा नहीं दिख रहा है और एक ब्लैक कलर का ग्रिल लगा हुआ है।

यह एक मैदान का क्षेत्र नजर आ रहा है यहाँ पर काफी लंबे-लंबे पेड़ दिख रहें हैं।